यहाँ एक पंडाल सजा है जिसमें गेट बने हुए हैं जो सफेद कलर के--

टेंट लगा हुआ है ऊपर नीला आसमान दिख रहा है और निंदर कुछ आदमी दिख रहे--

कत्थई कलर के खंभे और ऊपर कत्थई कलर की छत है बीच में एक मूर्ति खड़ी हुई है ऊपर --

यहां एक कार दिख रही है जो रेत पर खड़ी हुई है नीचे रेत पीले--

कलर की है और सामने कार जो है वो सफेद कलर की है साइड में एक नदी दिख रही है जिसका पानी--

यहाँ एक बिल्डिंग दिख रही है जिसमें ऊपर--

टीसू पेपर रखे हुए हैं दीवाल ऊपर सफेद नीचे नीले कलर की है और--

यहां दूर एक बिल्डिंग दिख रही है जो ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही है और नीचे कहीं कहीं--

वो ट्रैक बड़े अक्षर ग्रीन में लिखा हुआ है नीचे बहुत सारी मोटरसाइकिल--

और पेड़ दिख रहे हैं ऊपर नीला आसमान दिख रहा है।

बॉर्डर बनी हुई है और पीछे एक बड़ा पत्थर दिख रहा है जिसके बगल में एक औ--

यहाँ बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है जिसमें नीचे पीला कलर है और बहुत सारे आदमी--

यहाँ बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं और मोटरसाइकिल स्कूटी खड़ी हुई हैं यहाँ सामने दुकान है जिसमें--

ऊपर अजंता डेरी लिखा हुआ है जिसके बाहर बहुत सारे आदमी हैं और साइड में एक ओ--

सफेद और ग्रीन कलर के बहुत सारे गुब्बारे लगे हुए हैं नीचे स्टेज हरे कलर का--

दिख रहा है और बाहर पीले कलर की नीचे दीवाल है और सामने चबूतरा बना है जिस पर छोटी-छोटी--

दो पट्टी पुती हुई है। नीचे सफेद ऊपर पिंक कलर की है और सामने एक दो--

एक दो तीन लड़के बैठी हुऐ है जो ओ ब्लैक ऐंड व्हाइट और ग्रीन देख रहे है और नीचे बहोत सारे आदमी बैठे हुए हैं।

नोहरे हुए हैं और सामने एक टेबल पर एक आदमी है वो भी नोहरा--

लगी हुई है और दोनों साइड दीवाल पर बहुत सारे पंखे लगे हुए हैं।

यहाँ एक बड़ा क्लासरूम है जिसमें बहुत सारे लड़के लड़कियाँ--

बने हुए हैं जिनमें पेन काफी रखे हुए हैं और सामने टेबल है जिस पर बहुत सारे--

की बुकें रखी हुई हैं और सामने बहुत सारी--

यहाँ एक घर दिख रहा है जो पीले कलर का है जिसका गेट लोहे का काले कलर का है जिस पर ऊपर नीला--

ये रेलिंग लगी है जो ऊपर हरी नीचे सफेद कलर के पाइप हैं और सामने गमले रखे हुए है जो लाल कलर की है।

हाँ एक नदी दिख रही है जिसका पानी साफ--

पेड़ दिख रहे हैं और ऊपर सफ़ेद आसमान बादल दिख रहे हैं जिनके अंदर नीला कलर दिख रहा है।

दिख रही हैं और साइड में सड़क है जिस पर दो महिलाएं दिख रही हैं और--